एक आदमी बेंच पर बैठा है ब्लैक --

पैन सेट पहन कर जूता पहनना है सर्ट खोला हुआ है रेड कलर की कुछ दिख रहा है।

और बाउंड्री घेर रहा है चारों तरफ से और बहुत सारा बाँस लगी हुई है।

दोनों तरफ दीवार है बीच में आदमी खड़ा है और --

चार रैक दिख रहा है एक साइड से एक रैक दिख रहा है हल्का सा --

टोटल मिला के पाँच या छह रैक है उसमें सारा सामान भरा हुआ है।

लेडिस भी साथ नहीं दिखाई दे रही है धुंधला धुंधला टाइप में दिख रहा है।

वो हल्का हल्का दिख रहा है कि कट है।

ये दुकान है दुकान पर बाहर--

गाड़ी लेके आ रहा है उसकी लाइट जल रही है।

छोटा सा दरवाजा है उस दरवाजे से एक आदमी निकल रहा है हाथ में --

यहां कोई पूजा और पाठ हो रहा है लग रहा है और दीवार दिख रहा है पेड़ और पौधे बहोत सारे--

औरत आदमी सब लोग बैठा हुआ है कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग बैठे हैं।

और हरा भरा पेड़ भी दिख रहा है बहोत सुंदर भी डेकोरेशन है।

पूजा पाठ हो रहा है सिमिनार लगा पण्डाल सजा हुआ है और बहुत लोग उसमें बैठे हैं।

सामने बहुत सारा शॉप है रंग बिरंगे दीवाल पर सामान रखा हुआ है।

सामने कूड़ा है करकट है और रेलिंग जैसा लगा है हरा भरा पेड़ और पौधा है।

बहुत सुंदर है आदमी वाइट रंग का शर्ट पहना है।

और दुकान है फ्रीजर रखा हुआ है सारा सामान है।

दोनों साइड से रास्ता बना हुआ है फर्स सफेद है ।

है ब्राउन कलर का ब्लैक का प्लाई लगा हुआ है।

ये सामने पहाड़ एरिया दिख रहा है।

चकोरा चौतरा है उस पर एक आदमी बैठे हैं।

और आदमी बैठे है बट दिख नहीं रहा--

झुके हुए हैं हाथ में हॉकी लिए एक लोग हाथ में हॉकी लेके खड़े हैं।

और ब्लैक पेंट है सर पर टोपी पहने हुए हैं।

वो लाइट जल रही है उजाला छाया हुआ है।

सामने दो दुकान है दोनों दुकान पर पोस्टर लगा हुआ है ऑरेंज और वाइट और येलो में लिखा हुआ है।

एक आदमी रेड कलर का टी शर्ट पहना है बा इस्कूटी खड़ी है।

हरा रंग के पत्ती है और बाग और बगीचा दिख रहा है जंगल है दो मकान दूर में दिख रहा है बादल भी दिख रहा है बहुत सुंदर लग रहा है।

सामने हॉस्पिटल है हॉस्पिटल पर ह में बेड है।

और सारा सामान दवाई और रखा हुआ है लाइट भी भर रहा है।

लाइट भी बर रा है सफेद सफेद मकान भी एक दिख रहा है।

लेडीज खड़ी हैं एक मंदिर जैसा दिख रहा है।

उसमें पर्दा भी लटका हुआ है कुर्सी टेबल --

और ब्लू कलर का लाइट जल रहा है पिंक पिंक कलर पोस्टर भी दिख रहा है ऊपर झूमर में वाइट रंग का बत्ती भर रहा है दोनों साइड से ब्लैक है टी_वी लगा --

बरात आई है सिमनार है लाल पीला हरा बत्ती जल रहा है बहोत लोग खड़े हैं।

प्लेन दिख रहा है और सामने से पेड़ और पौधा भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा।

खिरकी है उजाला है सब निहुर के एक्सरसाइज कर रहे --

वाइट कलर का कपड़े पहने हुए हैं कमर में गमची बांधे हुए है।

सामने बिल्डिंग है दो ठो मंदिर है ऊपर तीन --

पाइप का रेलिंग लगा हुआ है।

और एलो कलर का उस पर कवर लगा हुआ है।